सामने कुछ ग्रिल्स दिख रहे है बाहर की तरफ पेड़ और पौधे भी दिख रहे है।

उप आकाश भी दिख रहा है आस-पास मे पोस्टर दिख रहे हैं।

यहाँ ट्रेन की खिड़की दिख रही है साथ ही रेलवे स्टेशन दिख रहा है सामने एक बैग रखा हुआ दिख रहा है एक प्लेटफार्म भी दिख रहा है।